मन्दिरों में बहोत सारी जगह होती है।

अलग-अलग भगवान होते हैं। अलग-अलग मुर्तिया बनी होती हैं।

पहाड़ जो होते हैं। पहाड़ बहोत ही ज्यादा बड़े-बड़े होते हैं। काफी ज्यादा खाली गुफाएँ भी होती हैं इसमें।

बंधन होती है जोकि बहोत ही पवित्र होती है और बहोत सारे --

प्रदेश जिल्ले में यह डांस किया जाता है और यह एक राष्ट्रीय मतलब के जिले का एक डांस है। जो चोदह फरवरी में --

जंगल जो होते है। जंगलो में बहोत बहो बड़े-बड़े पेड़ होते हैं। बहोत ही पुराने-पुराने पेड़ होते हैं।